बहुत दूर एक पहाड़ नजर आ रहा है। यहाँ कुछ पोधे भी दिख रहें हैं कुछ पेड़ भी दिख रहें हैं। यह हरा-हरा भी सा है।

एक कॉलेज और हॉस्पिटल है यहां पर पढ़ाई भी की जाती है और हॉस्पिटल है तो चेकअप भी किया जाता है कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग खड़े होकर बात कर--

बाहर कुछ फोर व्हीलर भी खड़ी हुई है कुछ लोग भी खड़े हुए हैं हॉस्पिटल के बाहर।

एक मस्जिद है मस्जिद के अंदर जनामाजी बिछी हुई है टोपियां रखी हुई है कुछ पढ़ने की बुके भी रखी हुई है फ्रेम भी लगे हुए हैं।